हैं इसमें बहुत सारे पत्थर बड़े बड़े पत्थर दिखाई दे रहे--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

और यह व्यक्ति माटी पर सीमेंट बुक रहे हैं।

दुकान के एंट्रेंस के फ्लोर ग्रीन कारपेट की लग बनाई हुई गई है।

यह एक दुकान के अंदर का--

फ्लोर है इसके दीवार लाल बैंगनी पीला ऑरेंज नीला और ग्रीन कलर से बना हुआ।

है इस पर कुछ डिजाइन भी बनी हुई है।

यह फोटो एक शोरूम के बाहर का फोटो है।

दोनों ने सूट पहना हुआ है।

ये पीछे भी कुछ आदमियां है।

इस बिल्डिंग का डिजाइन अजीब है और इसमें बहुत सारे टॉवर्स और डोम्स है।

और दूसरा आदमी ऑरेंज रंग और तीसरा आदमी लाल रंग का कपड़ा पहना हुआ है।

फोटो में एक काले रंग की लेटने की कुर्सी दिखाई दे रही है।

साइड में एक बाइक पार्क है और नदी पर एक खाली नाव भी दिखाई दे रही है।

इस पर एक कांच की बनी टेबल दिखाई दे रही--

इसकी एंट्रेंस पर एक ग्रीन कलर का रग रखा--

और ओरियो के बिस्किट भी रखे गए हैं।